यह एक कपड़े की दुकान है। सामने की ओर ढेर सारे कपड़े लटके हुए हैं। पीछे की ओर ढेर सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक बोर्ड है जिसपे रायल बुलेट लिखा हुआ है कार एंड बाइक क्लिनिक लिखा हुआ है।

कुछ लोग पत्थरों पर बैठे हुए हैं कुछ लोग नहा रहे हैं।

यह एक अमन ढाबा की दुकान है जिसपे कोई भी व्यक्ति अभी नहीं दिखाई दे रहा है मात्र एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

पीछे ढेर सारे सलवार टंगे हुए हैं सामने एक नीले रंग का फर्श बिछा हुआ है।

इस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो जैकेट पहने हुए है।